यहां पर जो बीच में एरिया है वो बहुत ही सुन्दर है।

यह एक मैदान है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां और बच्चे खड़े हुए है यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहां पर जो टेंट लगा है वो वाइट कलर का है और उसके पीछे बहुत बड़े- बड़े पेड़ है।

उसने मेहरुन कलर की चूड़ी पेहनी हुई है उसके पीछे एक दीवाल है दीवाल पर एक रेड कलर का बेनर लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है उसके बगल में एक फोटो लगी हुई है।